प्लास्टिक भी दिखाई दे रही है।

इंसान भी दिख रही है जो सफेद कलर का कपड़ा पहन के है।

वायर्स भी दिखाई दे रही है।

बहुत सारे फोटो फ्रेम्स भी दिखाई दे रही है।

बहुत सारे बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही है।

फ्लावर पॉट्स भी दिखाई दे रही है।

बहोत सारे बॉक्स पेन भी दिखाई दे रही है।

जिसमें लैपटॉप कंप्यूटर और प्रिंटर रखा हुआ है।

गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में सीढ़ी दिखाई दे रही है।

शीशा भी दिखाई दे रही है।

बंबू भी दिखाई दे रही है।

ऊपर में बहोत सारे लाइट्स भी जला हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक ऑफिस दिखाई दे रहीं है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे घर दिखाई दे रही है।

एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

बाहर में बहुत सारे डिस्को लाइट्स भी दिख रही है।